इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे कुछ खिड़की दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ फैक्ट्री दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ चट्टान दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे कुछ खिड़की दिखाई दे रहीं हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा हैं।